सामने ये कहां झर रही है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है पानी का स्रोत जो है।

और यहां पे एक जगह इकट्ठी हो गई है जो तालाब जैसा एक निर्माण किया गया है।

रोशनी कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही है जगमगाहट की रोशनी हो रही है।

काफी छोटा-छोटा इसकी कह कह कह कहना चाहिए इसके जो क्यारियां बनाकर के रख दिए गए है।

नेचर यानी प्रकृति तो यहां पे नर्सरी वगैरा रखी हुई है बाहर जो है पार्किंग एरिया का हमें--

वो काफी खूबसूरती से बनाया गया है देखने से बहुत।

यह एक कहना चाहिए रेस्टोरेंट का फोटो है काफी लोग यहां पे बैठे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने--

बोट के सामने और बोट के अंदर जो है काफी लोगों का दुकान छोटे छोटे दुकान लगे हैं।

यह एक सड़क के किनारे छोटा सा दुकान है जहां पे कुछ खाने पीने चीजें जो हैं--

नया पानी अभी काफी सा--

बहोत सारे शर्ट और हर कलर में यहाँ पे अवेलेबल है और हर कलर की जो शर्ट है।

और अच्छा लग रहा है देखने से लुक वाइज ये और इसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो काफी बड़ी मात्रा में यहां पर रखी गई है।